यह एक यह एक आपरेशन थियेटर है यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी है और बल्ब है।

यह मुझे एक दुकान दिख रहा है और दुकान सजाया हुआ है पूरे बल्ब भी दिख रहा है और बहोत सारे सामान है जो दुकान में रखा हुआ है।

यहाँ पे मुझे ये टेबल दिख रहा है टेबल पे कुछ समान है लैपटॉप और चेयर लगा हुआ है और दीवाल भी दिख रहा है पानी बोतल भी --

यहां पे मुझे छे ठो दिख रहा है और ऊपर में झालर टांगा हुआ दिख रहा है उस साइड पेड़ है जो कि वो ब्लैक ब्लॉक दिख रहा है।